और घन घास टाइप का--

खड़े हैं मेन रोड है साइड में अ--।

अ लड़का है जो कि इस घर को पेंट कर रहा है और टू व्हीलर खड़ी हैं एक बहुत बड़ा सारा पेड़ है।

ये घर वाइट और एं ब्लू कलर से पेंट किया गया है बहुत बड़ी--

काफी पेड़ हैं जो बहुत दूरी पर हैं और आगे--

और जिन गाड़ियों में से एक यलो गाड़ी है एक वाइट गाड़ी है और सामने एक बोर्ड है जिस पे हीरो लिखा हुआ है उसके जस्ट सामने--

अ रोड है जिस रोड पे एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है एक पेड़ है एक खम्बा लगा है।

ये एक कपड़ों की दुकान है इस कपड़ों की दुकान में बहुत सारी अ साड़ियां--

ये एक बहुत बड़ा रूम है अ इस रूम में फोर फाइव पलंग हैं इस पलंग के ऊपर--

ये एक बस स्टैंड है इस बस स्टैंड में कुछ अ दुकानें हैं।

ब्लैक बोर्ड है एक दो टेबल रखे हैं एक चेयर रखी है एक पोस्टर लगा हुआ है बाहर पेड़ है विंडोज़ है।

बंधन बैंक लिखा है उसके जस्ट सामने एक आदमी खड़े हैं टू व्हीलर खड़ी हुई है एक अम्ब्रेला --

अ गेट लगा हुआ है बैंक के बाहर फिर उसके जस्ट सामने एक--

एक ऑफिस है अ जो कि बहुत बड़ा है उसके बाजू में भी एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है।

ये एक गुरुद्वारा है जो बाहर अ--

लाइट से डेकोरेशन किया है लाल हरि पीली--

और एक बहुत सारी हरियाली है पेड़ पौधे हैं एक गेट बना है यलो कलर का गेट है तीन गुम्मटें बनी हुई हैं।

चिड़िये आयेंगी जिसपे पेंट किया गया है आसपास पेड़-पौधे लगे हुए है।

ये एक जंगल है जिसमें जहाँ बीच में गेट लगा हुआ है हरा कलर का उसके बाजू में।

और एक इसमें टीवी लगी हुई है एक बाहर बॉक्स लगा है वाइट कलर का।

लाइटों के तार गए हुए हैं बाहर एक ब्लू कलर का बोर्ड लगा हुआ है।

मकान बने हुए हैं वाइट कलर की बिल्डिंग है फिर उसके जस्ट सामने ब्रिज है।

अ ये गुरु नानक देव मंदिर है आसपास पेड़ पौधे लगे हुए हैं ऊपर झंडा है एक पानी की--

एक टेंपू खड़ा हुआ है चार लोग--

ये एक चर्च है चर्च में आज ग्रीन कलर की लाइट से डेकोरेशन किया गया है।

तीन चार छोटे छोटे पलंग हैं वाइट कलर की पुताई हुई है।

आस-पास अ पेड़ हैं हरे-हरे से और यह कूंचा।

पीछे बैक साइड में पिक्चर्स वाली अ दीवार है।

जिसमें बहुत सारे अ टमाटर हैं जिसमें।

जो कि अ एक सामने एक और ख खंबा है।

एक भैया खडे है टोपा लगाए हुए उसके सामने एक तारों से बोन्ड्री की गई है ब्लू कलर का बोर्ड है।

ये एक चौराया है जिसमें एक चौराहे पे एक मस्जिद है एक बाजू में बिल्डिंग है।

मूर्ति अ पिंक अ कलर की है और यलो पर्दों से डेकोरेशन किया गया है नीचे।

अ एक और पेड़ घर से अटैच है।

और टाइल्स वगैरह अ लगे हुए हैं और फिर एक और टेबल अलग लगा है चार्जिंग लगा है।

मेन रोड है मेन रोड में पेट्रोल पंप है सामने एक बिल्डिंग है ऊपर से लाइट के तार है बिजली का खंभा है।

ये एक बहुत बड़ा हॉल है जिस हॉल के सामने एक रेड कलर की दीवाल है ऊपर।